और सामने एक आद लेडीज खड़ीं हुई है जो सफ़ेद कपडे पहने हुए है और सफ़ेद ही उपर टोपी लगाये हुए है सामने की दीवार का कलर सफ़ेद --

पीले अक्षरों से कोपरेशन बैंक हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है।